यहां पर रोड पेट्रोल भरने की मशीन लगी हुई है यहां पर एक तार दिख रहा है बिजली खंभे का।

पीले कलर की दीवाल पुती है ऐ खिड़की में कुछ कपड़े रखे है और वाइट कलर की शर्ट में प्रेस कर रहा है और कुछ गुलाबी से भी कपड़े खर-रखे है।

यहाँ एक पंडाल है यहाँ पे बहुत सारे जेंट्स और लेडीज है लेडीजए गरबा कर रही है और जेंट्स भी खड़े है वहा एक जेंट्स ने कुरता और--

यहां एक दुकान है एक जेंट्स से खड़ा है और दो मोटरसाइकिल खड़ी है और यहां पर एक झंडा लगा है और बिजली के तार दिख रहे हैं बाजू में एक बिल्डिंग है।

यह एक कमरा है कमरे के अंदर एक जेंट्स है जेंट्स ने मोबाइल पकड़ के अपनी पिक निकाल रहा ओर उसने घड़ी पहनी है एक हाथ में घडी एक हाथ में धागा एक आदमी पीछे से देख रहा हैं।

जा रही है माकस पहन के ओर उने लाल कलर का थेला रखी है कुछ कार्टून रखे है ओर बोरियों मे कुछ सामान रखा है। और --

यह एक ग्राउंड है ग्राउंड में बहुत सारी लडकिया बैठी है जिन्होंने सफ़ेद कलर के शूट लाल कलर की चुनी डाली है।

तीन चार जेंट्स गेट के पास खड़े है और एक लेडिस एक बच्चा और जेन्ट्स बहार गेट के बहार खड़े है हरी कलर की लाइटिंग जल रही--

यह एक दुकान है दुकान में बहुत सारी पुस्तकें रखी है और शिवलाल की गाइड रखी है और फेविक्विक रखा--